कार भी खड़ी हुई है।

आदि योगस्थली योग केंद्र है और सामने एक रोड चल रहा है।

ये एक नाव है नाव में दो लोग बैठे हुए है।

ये एक पेंट की दुकान है जिसमें चार पांच पेंट के कलर रखे हुए हैं।

ये एक मैरिज होम है जिसमे काफी कुर्सियां रखी हुई हैं और येलो चुन्नी और रेड चुन्नी से डेकोरेशन की गई है।

और इसमें क्रीम कलर की कुर्सियां भी हैं एक बहोत बड़ी मेज है बहोत आ चार पांच आदमी एक जगह खड़े हुए--

यह एक नदी है और नदी के सामने एक सड़क दिख रही है

और अ इसके आस पास हरा भरा घास उग रहा है।

और इसमें बहोत ही सारे हिरण है।

ये फूलों की दुकान है।

बहोत सारी बुके रखी हुई है सीटों पर।

और एक रेड कलर का बैग ल् रखा हुआ है।

और एक पैलेस नजर दिखाई दे रहा है।

तीन बंदे खड़े हुए हैं दो पोल पड़ी हुई है।

लाइटे की सुविधा भी दिख रही है येलो कलर का एक गमला भी दिखाई दे रहा है।

ये टैक्टर का दुकान है जहां पे टैक्टर खड़े हुए हैं।

और मशीने सही में से रखी हुई हैं मेज पर रखी हुई--

मशीन के पास बहुत सारा बाग पड़ा हुआ है।

पड़ी हुई है एक आदमी मशीन को धकेल रहा है।

यह एक पन्नियों की दुकान है इसमें सभी तरह की पन्नी रखी हुई हैं।

दो बर्गर रखे हुए हैं। रेड सॉस रखी हुई है।

दो चम्मच भी रखी हुई है और उसके आसपास तीन पांच प्लेट रखी हुई है।

आसपास दो दुकानें और है।

फोटो दिखाई दे रहा है रविदास जी का और सामने दो आदमी भी बैठे हुए हैं।

यहां पे गाडियां धूलती है बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई है और--

लाइटों से डेकोरेशन की गई है एक ए_सी भी दिख रही है।

बुके रखी हुई है लाइट जली हुई है।

इसमें लाइट भी लगी हुई है एक पंखा भी लगा हुआ है।

बस में आदमी अंदर भी बैठे हुए हैं।

ये एक डॉक्टर योगेंद्र कुमार का क्लीनिक है यहां पे दवाइयां--

मेज भी रखी हुई है।

जिसमें सभी प्रकार की चीजें दिख रही है।